यह एक स्कूल है यहाँ पे बच्चो को नए-नए --

यह एक ऑफिस हैं जहाँ पे बहुत सारें --

भी मिलता है और यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे किताबों और कॉपियां मिलता है।

यह एक होटल है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे-अच्छे खाना मिलता है और यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर और आपकी पसंद की खाना भी मिलेगा।

यह मेडिकल है जहाँ पे दवा महलम और सभी तरह की बीमारियों से बचने वाले दवा और सुई भी मिलती हैं।